एक बहुत सारा पिक्चर है लगा हुआ छोटा-छोटा पिक्चर है आदमी का जिसमें कुछ पुरुस्कार भी मिल रहा है।

वाइट कलर का है पिक्चर --

और एक आदमी खड़े हैं और कुछ साइकिल --

और साइड में कुछ आदमी लोग है मछली को पकड़े हुए है तालाब के बाहर।

और उसके ऊपर गेट के ऊपर छठ एवं कार्तिक पूर्णिमा का गेट लगा हुआ है पंडाल।

और बोतल है पानी का --

उसके अंदर कुछ रंग ग्रीन कलर का है रेड कलर का है और दो लड़का झुका हुआ है एक लड़का --

एक आदमी खड़ ड़ एक आदमी खड़े हैं।

साइड में एक अ टावर है बिजली टावर --

मार्किट है। मार्किट के बीच से रास्ता किस साइड --

और उसके ऊपर एक डिश एंटेना लगा हुआ --

एक नाव है बीच नदी में।